यह एक बहुत ही हमे अच्छी सी इमेज दिखाई गई है ।

यह एक बहुत अच्छी सी झरना है यह झरना दिखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर है इसे देखने के लिए लोग बहुत ही दूर-दूर से आते है।